बड़ी-बड़ी इमारते छन माकन छन यखमा जी एक मैदान च दिखयाण लागूं यखम जी रेलिंग च दिखयाणा लंगी फूल क पौधा छन यखम कई सारा हरयां-भरयां डाला बी छन।

चित्र का माध्यम से यखम एक हवाई जहाज करा दिखेण लग्यूं यख मा जी हवाईजहाज कि खिड़की बिटि कुछ तस्वीर छन लियेण लगीं यख साइड वालू पंखा छ या हवाईजहाज कू दिखेण भैर फण हर्यूं-भर्यूं मैदान करा।